पुतला रखा हुआ है सामने स्टैंड है उसपे बहुत सारी मोमबत्तियाँ रखी हुई हैं जो की बूझी हुई हैं बगल में एक गेट भी है।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है ये एक अपार्टमेंट है अपार्टमेंट का गेट जो है वो की रेड कलर की है।

यात्री गण जो है की उसमे जाने को तैयार है और ये इंडिगो इसका नाम है जो प्लेन उड़ने वाली है अभी।